बिल्कुल सामने हमें ज़ेब्रा क्रॉसिंग दिखरी है जो कि सफेद और काले रंग की है और उसी के सामने दो बाइक सामने दिख रही हैं एक लाल रंग की है एक एक काले रंग की है।

सामने शीशे का एक बहोत बड़ा सा हमें अ जो है दर वो दरवाजा दिख रहा है जिसपे बहोत सारी जो कार एक्ससरीज हैं वो दिख रही हैं।

अ बहोत सारी हमें लाइटिंग्स दिख रही है। शीशे का पूरा एक हमें र्-अं बोर्ड बना हुआ दिख रहा है।